हमें इस तस्वीर के अंदर टीवियाँ नजर आ रही हैं टी_ वी_ हैं बहुत सारी।

हमें एक टावर मोबाइल टावर दिखाई दे रहा है।

किताबें हमें जमी हुई नजर आ रही हैं।

हमें फॉक्स टैटू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और हमें दिखाई दे रहा है एक पास में गमला छोटा सा रखा है जिसमें हरा पौधा लगा है।

और भी बहुत सारे खिलौने हमें नजर आ रहे हैं रखे हुए इस तस्वीर में।

मस्जिद हमें नजर आ रही है हरे रंग की सजी हुई लाइटों से।

मिनारा उसका दिखाई दे रहा है ऊपर सफेद लाइट लगी हुई है।

और हमें एक आ लड़का है जो खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

और हमें गाड़ियां अ खड़ी और सड़क पर जाती हुई भी नजर आ रही हैं।

तस्वीर में हमें अ टेबल लगे हुए हैं बड़े-बड़े।

हमें दो बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं एक पर बी_बी_ए बीकॉम पी_यू_सी लिखा है एक पर फेडरल बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

शेर हमें इस तस्वीर में बैठा हुआ और मुंह खोला हुआ दहाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

और हमें दीवार पर एक बड़ा बोर्ड लगा नजर आ रहा है पंखे लगे हुए हैं दो।

जिसमें हमें खिड़कियां भी बनी हुई नजर आ रही हैं।

हरे-हरे पेड़ हमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सफेद मस्जिद हमें दिखाई दे रही है बनी।

मीनारें उसके बने नजर आ रहे हैं सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

और हमें झूमर भी टंगे हुए दिखाई दे रहे--

हमे सामने दीवार पर बड़े बड़े फ्रेम तस्वीरे लगी हुई और सामान भी जमा हुआ नजर आ रहा है और--

दरवाजे हमें लगे हुए खिड़की लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

बर्तन चाय का रखा है डिस्पोजल ग्लासेस और चिप्स के पैकेट हमें टंगे हुए और रखे हुए नजर आ रहे हैं।

पानी का फव्वारा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है हरी-हरी घास के ऊपर।

और एक दुकान हमें दिखाई दे रही है एक आदमी और तीन बच्चे खड़े हुए हैं।

तस्वीर में हमें खिड़की के ऊपर ऑरेंज ग्रीन रंग के पर्दे नजर आ रहे हैं।